कुछ ईंटें भी पड़ी हुई हैं पास में मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

और पिछली साइड बड़े पेड़ भी खड़े हैं।

यह एक बहुत अच्छा शोरूम है।

और इसमें कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं जो कि नीले रंग और सफेद रंग के हैं।

और पास में कुछ मेज़ और कुछ कुर्सियां भी रखी है।

और इसके अंदर लाइटे भी बहुत लगी हुई हैं।

और साइड में एक लेडिस भी खड़ी है।

जिसके अंदर बहुत अच्छे पीले रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं।